इ थो एक ऑफिस है और यहाँ बहुत सारा बुक्स और टेबल कुर्सी और कंप्यूटर रखा हुआ है और--

और इहा पे बहोत ही लोग मस्त है और भी बहोत ही मस्त--

देखो एक कैंप बनाया गया हैंऔर ये कैंप में एक बड़ा सा गेट बनाया हैं और यहाँ बहोत ही सारा आदमी आये है।